यहाँ पर हमे एक बहुत ही सुंदर चमकता हुआ नजरा दिखाई दे रही है जहां पर बहुत ही ज्यादा बल्ब लगे हुए दिखाई दे रहे है यहाँ

जमीन पर अम्म कुछ बालू मिट्टी डली हुई दिखाई दे रही है बजरी भी डली हुई है वहाँ पर गाड़ी भी रखी हुई है और कार भी रखी हुई है ओर साइकिल भी --